यहा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिसमे अलग अलग शॉप लगे हुए है जैसे की विमल प्लाजा है आधीनव टायर्स है बाहर मे बहुत सारे बाइक रखे हुए है।

यह पार्क जैसा दिखाई दे रहा है जिन्मे घसरपट्टी दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

आसमान दिखाई दे रहा है बच्चों के खेलने के लिए यहा पर बहुत सारा घसर पट्टी जैसा दिखाई दे रहा है।

कुछ खंबे दिखाई दे रहे है जो बिल्डिंग है उसके बहुत सारे खिड़किया दिखाई दे रहे है बालकनी दिखाई दे रही है।

पांच लोग दिखाई दे रहे है एक गेट दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने मे रोड दिखाई दे रहा है बड़ी-बड़ी बिल्डिंगा दिखाई दे रही है कुछ शॉप दिखाई दे रहे है एक ऑटो जा रहा है।

बाहर मे एक होंडा रखा हुआ है एक साईकल रखी हुई है काले रंग की सिडिया लगाई हुई है एक चेअर भी रखी हुई है।

एक इंसान साइकल चलाते हुए जा रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

कूछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ लोग बाइक चला रहे हैं बाहर सायकल दिखाई दे रही है एक पेड़ दिखाई दे रहा।

यहा पर पुरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। बस एक बोर्ड लगा हूआ है। जिसपर लिखा है एक्सिस बँक एक खिडकी दिखाई दे रही है। लाइट जैसे दो दिखाई दे रहे है।

एक पर लिखा है स्टेट बैंक ए_टी_एम और दूसरे मे लिखा है ए _टी _एम व पैसे भरना मशीन --